एक घर है जो की बहुत बड़ा घर है जो की पुराने जमाने का है।

और नीचे काले पेंट पहने हुए है सामने एक चबूतरा बना हुआ है जिसमे छोटा सा गेट लगा है एक कार खड़ी है जो की लाल कलर की है।

सभी पत्थर भूरे रंग के दिख रहे है पहाड़ मे काला पन है।

उसके बगल में एक और गेट है जो कि खुला हुआ है उस गेट में काले रंग का पेंट हुआ है दर बहुत सारे पेड़-पौधे है और एक बड़ा सा बिल्डिंग है।

एक खुर्सी है जो की काले कलर की एक खुर्सी है जो सफ़ेद कलर की है।

सभी खुर्चिया भूरे रंग की है नीचे फर्श मे टाइल्स लगी हुई है सामने तीन दरवाजे है तीनो दरवाजे मे लकड़ी लगी हुई है।

खंबा दिख रहा है सामने और कुछ बड़े-बड़े पेड़ पौधे दिख रहा है दूर-दूर मे जो की हरे-भरे है।